यहाँ पे हमें एक माता का दरबार दिख रहा हैं जिसमे काफी सारे पुरुष महिलाये और बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पर काफी सुन्दर डेकोरेशन भी दिख रही है।

धूल लगी एक पीली लाइट भी दिख रही है और उसके पास काफी लाइटिंग से डेकोरेटेड हुआ माहौल भी दिख रहा है वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है।